यह एक मॉल की पिक्चर है जहां पर अलमारियों में सब सामान जमा है बहुत सारा सामान जमा है बहुत सारा सामान जमा है शैंपू कंडीशनर और स्क्रब स्क्रब बहुत सारा सामान जमा है।